और ग्रीन कलर की गेट लगे हुए है । उनके ग्रीन कलर की फाइबर वाली सीट से गेट बनाये गए हैं ।

यहाँ पर एक घर बने अ बना हुआ है और घर क सामने से एक रास्ता गया है । बिल्डिंग के सामने से एक रास्ता गया है । साइड में एक और मकान बना है जो की कच्चा है | वह मकान कच्ची ईंटो के द्वारा --

थेरेपी के द्वारा बॉडी मसाज थेरेपी है। इसके अ मशीन के द्वारा बॉडी मसाज दी जा रही है।

और कुछ पत्थर वगैरा पड़े हुए हैं और ब्रिज के ऊपर से एक टे-ट्रक आ रहे हैं। ट्रक आ रहा है।

यहाँ पर एक किला बना हुआ है जो की किले टाइप का बना हुआ है और जो बहुत पुराना है और जिसकी कुछ दीवालों पर तो काली सी अ काली-काली सी हो गई हैं।